यह एक चित्र है एक चित्र में बहुत बड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी नजर आ रहा है।

यह एक चित्र है चित्र में एक कछुआ नजर आ रहा है।

जिसमें एक चित्र है चित्र में एक गाड़ी नजर आ रही है और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं जो कि गाड़ी खराब हो चुकी है।

इसमें एक चित्र है चित्र में एक रूम है रूम में बहुत सी कुर्सियां दिखाई दे रही है और भी दिखाई दे रहे हैं।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

ये एक चित्र है चित्र में एक नज़र आ रही हैं दिखाई दे जा रही हैं।

ये एक चित्र है इस चित्र में नज़र आ रही है।

यह एक चित्र है इस चित्र नज़र आ रहे हैं जिसके सामने लगी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें बहोत सी किताबें रखी हुई दिख रही हैं।

जिन्हें एक बहोत बड़ी ज्वेलर की शॉप नजर आ रही है।

इस चित्र में बहोत से लोग गोल्ट खेलते हुए नजर आ रहे हैं।